यह एक बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया-सा फिगर दिखाया गया है।

जोकि माँ आंबे अजोमिक प्रासि केन्द्र दिखाया गया है। जोकि इलेक्टि सामान यहाँ सब --

और बहोत बढ़िया अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर यहाँ जो कि बहोत दूर-दूर से लोग कराने आते हैं कम पैसा में करते है इसीलिए लोग यहाँ ज्यादा कराने आते हैं।

बहुत सुंदर-सा फिगर दिखाया गया है जो की देखने में काफी सुंदर और मस्त और बहुत बड़ा है जो कि एक लड़का पहाड़ जैसे --

एक बहोत सुंदर सा फिगर दिखाया गया है जो की यह फिगर में --